आस पास में कई सारे पेड़ पौधे भी यहां दिख रहे हैं।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

ऊपर की ओर नीला सा आसमान दिखाई दे रहा हैं।

मुझे सामने की ओर एक दीवार दिखाई दे रही है दीवार पर बहोत सारी फ्रेम दिख रही है।

चौक में एक लकड़ी की बेंच लगी हुई दिख रही है।